मेबी ओ अब जाना चाहते हैं इस ट्रैन के उपर।

वो जो बादल दिखाई दे रहे हैं बहुत ही सुंदर दृश्य क्रियेट कर रहे हैं।

अपनी बॉडी को बनाते हैं ये अपने श वर्जिस करते हैं एक्सरसाइज करते हैं और बहुत सारे एक्सरसाइज करने के उपकरण यहाँ पे मोजूद हैं।

बहुत सारी गाड़ियां जा रही है जिसमे ऑटो दिखाई दे रहे है।

ये चर्च बहुत ही सुंदर लग रहा है।

वाकई बहुत ही स्वादिष्ट भोजन लग रहा है।

और यहाँ पे घास की थोड़ी कमी दिखाई दे रही है कही कही पे घास है और कही कही पे घास सुख गई है और एक आदमी जो है --

बहुत ही सुंदर देखे से इसका जो नेम है उपर लिखा गया है नाम लिखा गया है।

बहोत ही सुंदर गिरिजा घर है ये।

अभी जैसे की बारिश हो जाएगी काफी लोग अनंत करने के लिए यहाँ पे आते होंगे।

ये बहुत ही बड़ी सफ़ेद कलर की ईमारत दिख रही है।

हो सकता है की जीजस क्राइस्ट के बारे में ही --

लगता है कोई स्टडी कर रहा है यहां कोई अपना।

यहाँ पे लगता है की एक प्रीतिभोज का आयोजन किया है।